दाहिने साइड पे पानी पीने वाला जार है जिसका कलर ब्लू है उसके ऊपर एक ग्लास भी रखा हुआ है।

सीलिंग पे एक पंखा टंगा हुआ है सीलिंग का कलर व्हाइट है और दीवाल का कलर भी वाइट है बाहर में भी दो गाड़ियां दिखाई दे रही है गेट सीसे से बना हुआ है जो कि बंद --

यह तस्वीर एक दुकान का लग रहा है यहां पे मिठाईयां बनती है सामने में एक टेबल है इसका कलर ग्रीन है।

ऊपर में एक वेट नापने वाली मशीन है और लड्डू रखे हुए हैं बगल में तो डिब्बे भी रखे है जिसके अंदर नमकीन रखा हुआ है।

यह तस्वीर कोई पार्क का लग रहा है जहाँ पे घूमने के लिए व्यक्ति आते हैं जहाँ पे कोई भी व्यक्ति दिखाई नही दे रहा है।

दाएं साइड में एक बेल का पेड़ है जिस पे बेल भी भरे हुए हैं नीचे में रोड नहीं बना हुआ है नीचे मिट्टी है।

पुल के उस पार भी एक पुल दिखाई दे रहा है जिसका कलर वाइट है और पहले जो पुल है वो बहुत पुराना पुल है।

यह तस्वीर एक बिल्डिंग का है जिसके सामने टोल प्लाजा बाल्डे लिखा हुआ है।

पिक्चर में एक बिल्डिंग है जिस पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे फर्स्ट चॉइस लिखा हुआ है सामने में एक बोलोरो लगा हुआ है जिसका नंबर छब्बीस बारह है।

दाहिने साइड में एक बोगी देखने वाला नंबर दिखाने वाला लाइट लगा है जिस पर ई_सी_आर लिखा हुआ है वहां पर बहुत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने में एक रेड कलर का चेयर भी है वहां पे एक ब्लैक कलर का चेयर है जो कि गोल गोल घूमने वाला है। टेबल पे एक बार कोड स्कैनर है।

और उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा रखा हुआ है और दूर सामने में एक घर दिख रहा है जिसका कलर पिंक है वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

ये स्टेज का फोटो है जहां पे बहुत सारे फूलों का कार्यक्रम हो रहा है ऊपर में सीलिंग पे ब्लू कलर का एयर लाइट्निंग लगाया गया है ऊपर मे तीन पंखे लगे हुए हैं और बहुत सारे व्हाइट कलर की लाइटें लगी हुई है।

टेबल पे स्केल रखा हुआ है कॉपी रखा हुआ है एक छोटा सा पंखा भी है और वहां पे फोनपे का मशीन भी है जो की आवाज करता है पेमेंट के टाइम पे।

यह तस्वीर एक टेंपो का है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए है। जिसमें से एक व्यक्ति ने व्हाइट कलर का शर्ट और पैंट पहना है और स्लीपर पहना है और गमछी लपेटा हुआ--

नीचे के कोना में एक व्यक्ति है जिसके सर के ऊपर बाल नही है और वो गमछे लपेटे हुए हैं।

अगल बगल बहुत सारे पेड़ हैं और सामने में एक बिल्डिंग से दिख रहा है जिसमें दो खिड़कियां हैं और वो गुलाबी कलर का है उसके सामने करकट लगे हुए हैं।

गेट सीसे से बना हुआ है। और वहां पे दो व्यक्ति भी खड़े हुए हैं अंदर में बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं।

यह तस्वीर एक दुकान का है जहां पे गरीम और मछलियां मिलती है दाहिने साइड में बहोत सारी लाल कलर की मछलियां है पीछे के साइड में व्हाइट कलर की मछलियां--

सामने में दो पंखे दिखाई दे रहे हैं जोकि सीलिंग पे लगाए हुए हैं और वो व्हाइट कलर के हैं।